कुछ गाय का कलर व्हाइट है कुछ का ब्राउन ।

का ब्लैक है गाय सारी घास के ऊपर बैठी है साम--

इसमें एक ग्रीन कलर का मरीजो का बेड भी--

सभी को ध्यान से सुन रहा है।

शॉप में काफी फ्लावर के गुलदस्ते ऊपर दीवार पे हैंग किए गये हैं।

मीटर बॉक्स की तस्वीर है मीटर बोक--

इसमें व्हाइट कलर के प्लेन दो गुलदस्ते हैं।

साइड में बीच में नौ गुलदस्ते काफी प्रिंटेड हैं उसके सामने से --

यह एक डॉक्टर के शॉप है इसके अंदर पड़ी है।

यह पेमेंट के शॉप है यहां से--

इसके बाहर बॉक्स पर लैंड्स की--

साइड में एक्टो के अंडरवियर्स भी --

सारे बच्चे टेबल पर बैठे हैं टेबल पर काफी मटेरियल पड़ा है।

इसके पास काफी प्लेयर्स खडे है जिनके हाथ मे टेनिस है।